दिख रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा- सा मेला लगा हुआ है ये मेला काफी बड़ा नज़र आ रहा है मेले के ठीक पास में एक झूला लगा हुआ है झूले के ठीक ऊपर कई सारे आदमी नज़र आ रहे जो कि बच्चे जो कि झूले को खेलते हुए नज़र आ रहे--

जैसा की अपने को नज़र आ रहा है की यहाँ पर छोटी सी दुकान बनी हुई है दुकान के ठीक ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है ये बोर्ड काफी ज्यादा बड़ा नज़र आ रहा हैं।

बोर्ड के ठीक नीचे की साइड में देखा जाए तो एक छोटा - सा काँच लगा हुआ है काँच जोकि रेड कलर के इसमें लगा है उसके ऊपर एक शटर लगा हुआ है उसके ठीक अंदर काउंटर लगा हुआ है काउंटर जोकि रेड कलर नज़र आ रहा उस --

काउंटर टिक ऊपर के साइड मे सिस्टम रखा है सिस्टम जो कि बिल उसके नीचे टेबल है टेबल के ठीक सामने एक आदमी है जो की नीले कलर शर्ट और ग्रीन कलर के जीन्स पहने हुए हैं। उसके ठीक --